कोई सीमेंट का काम चल रहा है यहाँ पर और एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है जो कि वाइट कलर का टी-शर्ट पहने हुए है। जीन्स पहने हुए है।

मानो लग रहा है की यह कोई पेट्रोल पंप --

कपडे दिखाई दे रहे हैं जो एक येलो है एक ब्लू और एक स्काई टाइप में है और एक ऑरेंज कलर का है।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

यहाँ पर हरे-भड़े पेर नजर आ रहे है और एक पीकॉक है पंछी।

एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रही है। लग रहा है यह किसी गाँव का चित्र है और गोडाउन है यहाँ पर। दीवाल इटों से बरी हुई हैं।

बहुत लम्बी सड़क है और उसके आस-पास घांस से भार हुआ है एक खम्बा भी नज़र आ रहा है।

और यह बोहोत ही सुन्दर लग रहा है। एक दम चमचमाती हुई रात का समय है। बोहोत ही सुन्दर नाज़ार है।

एक आदमी भी दिख रहा है और दूर से देखने पर बिल्डिंग भी नज़र आ --